दिवार पे कुछ कपड़े से डिज़ाइन किया हुआ दिख रहा है। ए --

लोग नजर आ रहे हैं खड़े हुए आस-पास कुछ छोटे-छोटे और बड़े-बड़े हरे पेड़ दिख रहे हैं आसमान नजर आ रहा है ।

यहाँ पे एक दुकान दिख रही है जिसका गेट दिख रहा है। गेट पर फूल लगे हुए नजर आ रहे है। कांच का एक दरवाजा दिख रहा है एक बड़ा सा पोस्टर दिख रहा है।